ये मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में यहाँ पे एक दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी हुई है और यहाँ पीछे मुझे बहुत सारे प्लांट दिखाई दे रहे हैं और वहाँ से पेड़ भी है।

और यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं एकदम बहुत बढ़िया शानदार फोटो दिखाई दे रहा है किसी गाँव का फोटो है किसी कस्बे का फोटो है ये।

और ये किसी मशीन वाले की दुकान पर रखी हुई हैऔर पीछे एक नीले रंग की बाल्टी भी लगी हुई है।

मुझे एक बहोत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है। बहोत ही बढ़िया फोटो है मुझे मैदान दिखाई दे रहा है हरे रंग का जहां पे--

और यहां पे और यहां पे बहुत सारे पेड़ भी है और यहां पे --

और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है बहुत ही शानदार फोटो है।

यहाँ पे स्कूल में कुछ बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे एक मैडम दो मैडम हैं यहाँ पे।

मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और ये किसी भगवान के मंदिर का फोटो है जहाँ पर मंदिर में सफेद रंग का यहाँ पे पेंट हो रखा है।

बगल में सैनिटाइजर भी रखा हुआ है सबके पास मोबाइल भी है बुक्स भी रखे हुए है यहां पे--

और देखो लड़का यहाँ पे पीछे आदमी खड़ा है जो कि गाड़ी पर हाथ लगा रखा है।

और ये काफी बड़े बड़े गाड़ी जिनके अंदर कुछ माल ट्रांसपोर्ट हो कर--

जहाँ से आप स्टूडेंट अपनी कभी सभी कॉपी किताब पेंसिल रबर इरेजर और जूते।

और यहां पे स्कूल के जूते और ढेर सारा कुछ सामान लेसकता यहां से।

और यहाँ पे किसी भी क्लास के आप बुक्स भी ले सकते हो यहाँ पे दुकान है अंदर व्यक्ति बैठा हैऔर इसकी छोटी सी दुकान है।

ये भी एक मुझे बहोत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और यहां पर मैं इस फोटो के अंदर देख पा रहा हूं कि ये एक बहोत बड़ी यहां पे--

और यहाँ पे इसकी पास में बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ पड़े यहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली हरियाली।

लगता हैयहाँ पे कहीं घूमने के लिए आए होंगे किसी पहाड़ी इलाके का फोटो हैजहाँ पे एक लड़का अपना फोटो भी ले रहा है।

ये भी एक मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और जहाँ पे मैं इस फोटो के अंदर--

यहां किसी मैरिज हॉल या सुखदेव के नाम से एक पैलेस है शादी का उसे देख पा रहा हूं जिसमें बहुत अच्छी शानदार--

और यहाँ पे दो मुझे चेयर भी दिखाई दे रही है बहुत बड़ा फील्ड हैयहाँ पर।

बहुत बॉक्स हो चुकी है बहोत बड़ा यहां पे दे रहे है उस स्कूल में हुई है।

ये मुझे बहोत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और यहां पे मैं इस फोटो के अंदर देख रहा हूं किसी बैंक का है जहाँ पे तीन व्यक्ति खड़े होकर यहां पे से बात कर रहे हो और यहां पे पीछे--

एक आराम से कुर्सी पर बैठी हुई यहां पे कैमरा भी लगा हुआ है लाइट लगी हुई है यहां पे और यहां पे मुझे ए_सी भी दिखाई लग रही दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छा शानदार फोटो --

किसी दुकान या शॉप का फोटो जहाँ पे मुझे मोबाइल से संबंधित कुछ चीजें दिखाई दे रही है जहाँ पे ईयरफोन भी है।

ये एक मैं बहुत बहुत अच्छा फोटो देख पा रहा हूँ जहाँ पे मुझे फोटो में यहाँ बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है बहुत पुराना मुझे--

एक मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और इस फोटो में मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर मुझे --

ये बहुत बड़ा महाविद्यालय है जहाँ पे अच्छा है और उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

लगता है किसी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा इन्होंने किसी यहाँ पे इन्होंने कोई डांस नियुक्त किया होगा बहुत अच्छी शानदार लग रही है सभी लड़कियाँ।

सारे में मिट्टी दिखाई दे रही है बहुत सारी लकड़ी पड़ी हुई है यहाँ से सूखी लकड़ी है।

एक बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है।

फिर एक मुझे एक बोहोत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है और यहां पे में इस फोटो में देख पा रहा हूं यहां पे--

दो मुझको ए ई रिक्शा खड़ी हुई दिखाई दे यहां की है यानि की--

कोई रात का फोटो जहां पे बहोत सारे लोग खड़े हुए आदमी खड़े हैं।

फिर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा शानदार सा फोटो दिखाई दे रहा हैऔर यहाँ पे मैं इस फोटो के अंदर देख रहा हूँ ये किसी एक ल या सेल का फोटो जहाँ पे--

मुझे बहोत अच्छा का फोटो दिखाई दे रहा है और यहां पर मैं फोटो के अंदर देख पा रहा हूं कि--

फिर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा सा अंदर सा फोटो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मैं फोटो के अंदर।

जहाँ में एक बहुत बड़ी लाइट की लगी हुई है और ऊपर आसमान में काले रंग के बादल छाए हुए हैं।

चारों तरफ यहाँ पे मुझे हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और यहाँ पे खजूर के भी पेड़ खड़े हुए हैं नाराज के भी पेड़ है यहाँ पे।

मुझे एक बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ पे फोटो में मुझे दिखा देखने को--

ये मुझे बहोत अच्छा सा फोटो देखने को मिल रहा जहां पे फोटो में रहा हूं कि--